यहाँ पर ए.टी.एम. भी है| यहाँ लोग भी हैं| यहाँ पैसे निकाले जाते--

यह एक चित्र है। बोहोत ही सुन्दर है। यहाँ पर डांस हो रहा है। यहाँ चार लड़कियाँ हैं। बोहोत ही सुन्दर डांस करती हैं।

यह एक चित्र दिखाई दे रहा है बहुत ही सुन्दर --

पट्टी साफ़ है बहुत ही अच्छा लग रहा है ये लड़का बाल कटिंग में बहुत ही अच्छी फोटो हो लग रही है।

यह काफी लरके- बच्चे लड़कियां देखाई --

यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुन्दर है ये चित्र बहुत ही गज़ब है।

यहाँ पर शीशा दिखाई भी दे रहा है सामने यहाँ एक लड़के को --